काफी सारे खिलौने नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक जगह दिख रही है।

कुछ फूलों के रिन दिखाई दे रहे हैं।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

बिजली के तार बने हुए हैं।

औरत ने गुलाबी साड़ी पहनी हैं।